और बोहोत ही अच्छा दिख रहा है सब कुछ।

जैसा की देख सकते है यहाँ पर दो पैरटस हैं जो देखने में बोहोत ही प्यारे और बोहोत ही सुन्दर लग रहे हैं।

जैसा कि देख सकते हैं। ये बोहत बड़ा ग्राउंड है प्लेग्राउंड है। जहाँ पर --

छोटे मोटे झाड़ियों से सजाया गया है।

जैसा कि देख सकते है ये अमूल डेरी है यहां पर अमूल डेरी के दूध -

और वो उनको बोहत गोर से देख रहे --

बहुत सारे जिम्स के टूल्स रखे हुए हैं और यहाँ पर बोहत सारी लाइट्स हैं और --

और यहाँ स्क्वेर यानि राउंड शेप में बोहत अच्छा झूला है।

कुछ महिलयाँ जो है वो भगवान से प्रे कर रही हैं गॉड से --

और हम सभी को ये नज़ारा देखना चाहिए और आना चाहिए।

यहां पर जिन है जहां पर एक बालक बैठा हुआ है।

और पेड़-पौधे भी है पेड़-पौधे जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं।

क्लब्स बने हुए हैं और ये इसको --

और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा जैसा कि ये अंधेरे में पिक ली गई है।

जैसा कि देख सकते हैं। ये बोहत बड़ा ग्राउंड है। जहाँ पर एक छोटी-सी झोपड़ी बनी हुई है।